खम्बो के ऊपर बनाया गया है आसपास में कुछ फूल भी उगाए गए हैं फूलों का रंग पीला एवं लाल है।

और उसमें लाइटें लगाई गई हैं।

यहां पे बैठने के लिए कुछ कुर्सियां भी लगाई गई हैं।

यह तस्वीर में मुझे बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एवं कुछ पौधे उगाए गए हैं।

चारों तरफ बड़े-बड़े पेड़ एवं बगीचे के एक कोने में बच्चों के खेलने के झूले लगे हुए हैं।

अगर देखा जाए तो इस तस्वीर में मुझे एक लाइट वाला खंबा भी दिख रहा है।

एवं ये इमरत लाल ईटो की बनी हुई है।

पीछे जो इमारत है वो चर्च की ल प्रतीत होती है इमारत का रंग सफेद है।

और एवं एक दो दरवाजे भी दिख रहे--